और एक लाइट लगी हुई है और यहां पे एक झंडा भी है और बहुत सारा पैड सब है।

नाई के दुकान में एक आदमी है उसके बगल में एक शैंपू का बोर्ड लगा हुआ है वहां पे तार है पेड़ है पौधे है।

और एक बहुत अच्छा रोड हैबहुत अच्छा बिल्डिंग है | यहां पर बहुत सुंदर सब --

दुकान है इसका नाम है ब्राइट लाइन ड्राई क्लीनर्स फाइन ड्राई ड्राई क्लीनर्स यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है यहां पर बहुत सारे लाइटे हैं यहां पर मीटर लगा हुआ है ।

सफेद कलर की है यहां पे एक पाइप लगा हुआ है और बहोत सारे तार लगे हुए हैं और बहोत सारे पेड़ हैं।

और इसपे बहुत सारे अच्छे से ग्रील लगे हुए हैं बहुत सुन्दर।

टायर टंगा हुआ है और बहार एक लाइट है और बहुत सारे तारे हैं जिसमें मोटरसाइकिल ठीक होती है यहाँ बहुत पुराना सा गैराज है ।

इसका नाम ये टाटा पुराना पार्सल है यहां पर बहुत सारी गाड़ियां बनती है ।

यहां एक माल है जिसका फ्लोर बहुत ज्यादा ही सुंदर है यहापे बहोत लोग है और इसमें बहुत सुंदर सा ग्रिल लगा हुआ है बहुत सारी लाइटें है बहोत सारे फूल है ।

अनिल ऑटो पार्सल यहां पर मोटरसाइकल बनाई जाती है अनिल ऑटो पार्ट्स यहां पर एक करकट का घर है|

यह एक कोचिंग सेंटर है जिसका नाम है फाऊंडेशनल ऑफ कॉमर्स यहां पर कॉमर्स की पढ़ाई की जाती है यहाँ पर कॉमर्स के बारे में सभी जानकारी दी गयी है यहां पे इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है यहाँ पे ।

का दृश्य है जहां पर बहोत सारी दुकाने हैं बहोत सारे ठेले लगे है और बहोत सारे आदमी यात्रा करने आते हैं।